और एक लड़का अपनी फोटो खिंचवा रहा है जो की पहाड़ों पर टंगा हुआ है। यहाँ पर पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं और --

यह एक गार्डन है जहाँ पर वे बहोत सरे फूलों से सजी हुई है ब्लू कलर के खम्बे बनाये हुये हैं यहाँ पर रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं और एक --

वह एक ए.सी. सैलून है ज जिसके अंदर एक जेन्ट्स खड़ा हुआ कुछ कुर्सियां भी हैं और खिड़की लगी हुई है एक बहौत --

यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर कई सारी महिला चुनरी ओढ़-ओढ़ कर पूजा कर रही हैं यहाँ पर कई सारी हरी हरियाली लगी हुई है कई पेड़ भी लगे हुए हैं।

यह एक रेस्टॉरेंट है जहाँ पर भोजन और नास्ता मिलता है यहाँ पर कई लोग आ रहे हैं और कई बाइकें खड़ी कई ठेले खड़े हुए एक लड़का चश्मा लगा टोपी लागे और --

बैग लगाए हुए है ऊपर पहाड़ है और गुफा दिखाई दे रही हैं दो दो नीचे लकड़ियां भी डली हुई हैं और यहाँ पर पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं वो चश्मा --

पिंक कलर की साड़ी ब्लू कलर की साड़ी और रेड कलर की चुनरी वाली कई परकार की साड़ीयाँ पहने हुए हैं और यहाँ पर कई सारी दुबा लगी हुई हैं पूजा कर रहे हैं।

ये रॉयल प्लेस बने हुए हैं और यहाँ पर कई सारी बाइकें भी खड़ी हुई हैं और सामने कुछ लोग भी खड़े हुए हैं।

रेज़र कटहर और भी बहुत-सी चीजें मिलती हैं आपको जो भी आपको चाहिए।